और यहाँ फोटो खींचाने में ब बड़ा मजा आता है कोई-कोई को तो जिम नई फोटो खींचाने ही जाते हैं।

वहाँ से गुजर रही हैं देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ खाने-पीने का नहीं दिख रहा हैं यहाँ--